ये सड़क के किनारे एक बैंक है बैंक के बाहर बहुत सारे आदमी बैठे हैं।

ये कपड़ों का शोरूम है सूटों का लेडीस सूटों का। यहाँ फैंसी ड्रेसे हैं बहोत सी।